और यहाँ पर लोहे के सरिये जैसे बड़े-बड़े रॉड्‌ भी बनी हुई है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत घने लगे हुए है।

वह बस खड़ी है ये बस उधर से इधर से निकल के उधर जा रही है इस रास्ते पे यहाँ एक बाइक भी खड़ी है यहाँ दो आदमी बैठे है।

ये जो हरे हरे पत्तिया पेड़ पोधे दिखाई दे रहा है यहाँ पत्थर भी नजर आ रहे है।